और एक रेड कलर की एक्टिवा खड़ी हुई है।

इस इमेज में हमें एक कम्युनिटी हॉल दिख रहा है।

और ये शॉप मे एक लेडीस बैठी हुई है पीछे जो है ये रेड कलर की टी फ्रिज है ये जिसमें बहोत सारी थम्स अप की बॉटल रखी हुई है ऊपर फैन लगी हुई है।

इस इमेज में हमें एक बोट क्लब दिख रहा है जिसमें बहुत सारी बोट खड़ी हुई हैं और जो है कुछ अह लोग भी खड़े हुए हैं वहां पे।

जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं जो ब्लैक कलर के ग्रेप्स और ग्रीन कलर के ग्रेप्स और--

इस इमेज़ में हमें एक पार्क दिख रहा है जहां बहोत सारे पेड़ लगे हुए है बड़े-बड़े और कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए है जमीन में --